खाली जगह है और वहां बहोत सारे अलग अलग प्रकार के रंगों के र--

और दो तीन कार दिख रही है।